ऊपर की ओर बोर्ड पर कोको कोला और मधुर मिलन लिखा हुआ है।

इसपे मछलियां नजर आ रही है।

ग्राउंड पर हरी हरी घास नजर आ रही है।

सामने एक ब्राउन कलर की टेबल दिख रही है।

बगीचे के बीच में एक गोलाकार जल सुविधा भी है।

सामने की ओर राधा कृष्ण की मूर्ति रखी दिख रही है।

इतर में दो स्विमिंग पूल दिख रहा है।

फिफ्टी पर्सेंट ऑफ की कुछ बैनरें लगी हुई हैं।